घर के बाहर साइकिल और बाइक लगाया हुआ है।

रूम में व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

दीवाल पर एक बोर्ड भी है।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया हो गया है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर के बाहर बहुत बड़ा गेट भी हैं।

घर के बाहर एक दरवाजा भी है।

यह एक घर है घर का रंग व्हाइट कलर का है।

घर के पास दो गाड़ी लगाया हुआ है एक पोल में बोल लगाया गया है।

घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

बोर्ड पर जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

घर का रंग व्हाइट और लाल से पेंट किया हुआ है।

में एक आदमीन कंप्यूटर चला रहा है।

दुकान में पंखा भी लगाया हुआ है।